और नीचे टेबल्स रखी हुई हैं जो येल्लो कलर की ब्लू कलर और रेड कलर की हैं।

दो तीन बाइक्स खड़ी हुई हैं। नीचे दो अंकल खड़े हुए हैं। एक अंकल ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और एक अंकल ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है। नीचे एक ए टी एम भी है यहाँ पर।